सामने मैदान है स्टेडियम बना है मैच का आसपास घर बना हुआ बहुत--

यह कुछ लोगों का ऑफिस दीवा --

सामने चाय लिखा हुआ हैं और कुछ हैं न चाय की दुकान हैं।

खिड़की पीछे से टी_वी क वायर वाइट कलर की इसको पोताया गया हैं।

अउ ये बोट में और ये अंदर की क्लास्सेस वाला एरिया हैं ये और कोई दिख नही रहा दूर-दूर तक--

एक तीन सेट के अंदर